और नीचेश कई ढेर अं ढेर सारी शॉप है। शॉप रेडीमेड जेन्ट्स कपड़ों की शॉप है इनके बाहर --

बड़ा-सा शोरूम है रेडीमे अअ जेंट्स शोरूम है जिसमें कई इइ क्वालिटी को के --

--नदी के किनारे का व्यू है जहा पर ऊपर की तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है वहां पेड़ ही पेड़ है नीचे नदी बहुत ही तेज धारा में बह रही हैं।

यह एक बहुत ही बड़े पत्थर के पहाड़ बने हुए है और उसी के पथरो के पहाड़ो से एक रास्ता निकला हुआ है।

और दोपहर का समय है झरने के किनारे पेड़ भी लगे हुए यहाँ पे कुछ भी कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है।